और ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई है।

जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अवार्ड दे रहा है।

और दीवार पर कुछ लाइट भी लगी हुई है।

और एक बहुत सुंदर सा टेडी भी बना रखा है।

इसके अंदर अलग अलग परकार के पेड़ पौधे है।

और इस बिल्डिंग का कलर रेड और वाइट कलर का है।

जिसके अंदर सोफे भी रखे हुए हैं।

यह एक वेडिंग हॉल है जिसको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट भी किया हुआ है।

जिसके अंदर कुछ कंपनियों के लैपटॉप रखे हुए हैं।

और यहां पर कुछ कंट्री के फ्लैग भी लगे हुए हैं।